यह हमे एक शॉप दिख रही है जो बीज भंडार की है और इसमे दो टेबल रखे हुइ हैं ओर एक बेड रखा हुआ है।

और एक लड़का जो अपनी फोटो खींच रहा है और उसने कान में हैडफ़ोन लगाया हुआ है।

सामने हमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जो अपनी फोटो खिंचा रहा है और इसके अ घर में बहुत सारी सजावट हो रही है और एक ए ए ऐसी लगा हुआ है उसके घर में।

बोहोत सारे व्यक्ति कर्मचारी जो काम कर रहे हैं।

सामने हमे एक बड़ा-सा पार्क दिखाई दे रहा हैं इस पार्क में बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हैं जो की हरे-भरे दिखाई दे रहे हैं।

वहां बहुत सारी हिरने हैं कुछ हिरने इधर उधर घूम रही हैं कुछ हिरने पानी पी रही हैं और उसमे बहुत सारे टब लगे हुए--

सामने हमे बहोत सारे बिल्डिंगे दिखाई दे रही है जो काफ़ी रंगों से पेंट है रंग बहोत सारे कलर के है और वहां पर बहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए है।

सामने हमें एक बड़ी सी मूर्ति दिखाई दे रही है जो काफी बड़ी दिखाई दे रही है उसका कलर अ येलो कलर का है और उसके आस-पास दीवारें वाइट कलर की है जो काफी सुंदर दिखाई दे रही है।